पीले रंग के कपड़े बांधे हुए हैं सारे कुर्सियां बहुत अच्छी लग रही है ये चित्र बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में।

यह एक मंदिर है मंदिर में बीचो-बीच सीढी है सीढी के ऊपर एक मंदिर है जिसमें चार खंबे लगे हुए हैं खंबे के बगल में दीवाल है दीवाल के बगल में तीन ऊपर गुंबज लोग लगे हुए हैं गुम्बज के बगल में रंग-बिरंगे बल्ब जल रहे हैं यह एक हनुमान जी का मंदिर है |